यहाँ पर एक बड़ा सा मूर्ति जैसी कुछ दिखाई दे रही है। दरअसल एक बड़ा से बिल्डिंग है जिसके ऊपर में --

यहाँ पर बहोत सारे लड़कों को एक साथ देखा जा सकता है। कुछ लड़कियाँ भी यहाँ पे दिखाई दे रहीं हैं।

लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही हैं दरअसल वह सूरज है अगल-बगल में बहौत सारे पेड़-पौदे भी दिखाई दे रहे हैं।

एंड सामने की तरफ में एक बालगनी जैसी कुछ बनी हुई है।

यहाँ कोई योग का कोई ये ये स्टेप करती हुई नज़र आ रही है।

जो देखने में काफी अच्छी लग रही हे । नीचे थोड़े बहुत कुछ वगेरा लगे हैं।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है जो कि श जो कि ग्रे कलर से पेंट किया गया है। घी कलर से पेंट किया गया है।

यहाँ पर बहुत सारे एक जैसे प्राणियों को देखा जा सकता है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और ये सीसे की बनी हुई है।

कुछ गेट है जिसमें कुछ खिड़किया भी कुछ कुछ इसमें दरवाज़ा वरवाज़ा नहीं लगा हुआ है।